किले के आगे रॉड से चारों तरफ घेरा गया है और रॉड में तार लगे हुए हैं जिस पे एक महिला चढ़ के उसे पकड़ के आगे की तरफ बढ़ रही है और एक लड़का भी है उसे भी--

और एक आदमी है जो बाइक से उतर रहा है एक बच्चा खड़ा है।

और खजूर के पेड़ हे व तरकुल के भी पेड़ हैं।

एक छोटा सा कमरा दिख रहा है जहा पर बोहोत साडी मशीने रखी हुई है बोहोत सारे --

एक कुर्सी खाली है फिर एक आदमी बेठा है फिर एक कुर्सी खाली है फिर एक आदमी बेठा हुआ है।

रात का समय है यह एक मॉल है जहा पर काफी लोग खड़े है और काफी लोग बैठे हुए है यहाँ कुछ प्रोग्राम भी होता है और यहाँ पे बगल में दुकान है जहा पर सभी कुछ सामान खरीद के खा रहे है।

और कार्पेट भी बिछाया गया है और उम अ --

मुझे एक बहुत बड़ी दीवाल दिख रही है जिस पर पोस्टर लगा हुआ है अर्जुन स्पोर्ट्स शूटिंग रेंज ।

एक टेबल है और उस दीवाल के बगल में एक बच्चा है जो कि उसपे चढ़ा हुआ है।

एक लड़का अपने हाथो में बुक लिया हुआ है और न बोहोत सारे बाइक खड़े है।

कुछ लड़किया नीचे बैठी हुई है घुटनो के बल और कुछ लड़किया खड़ी है और बीच में एक सफ़ेद कलर का शर्ट पहना हुआ लड़का है जो की अपने हाथो में झंडा लिया हुआ है ये लोग स्टेज पर खड़े है बैठे है और स्टेज को बहोत अच्छे से सजाया गया है कपड़ो से --

एक दुकान लगाया गया है जो कि मिठाई की दुकान है और दुकानों में बहुत तरह तरह के मिठाई लगी हुई है और इस दुकान के ऊपर--

रोड भी है कच्ची सड़क है और एक पेड़ दिख रहा--

और श्याम का टाइम हैं और बादलें नीली दिख रही है मतलब अ ब्लैक ब्लैक दिख रही हैं।

वे स्कूल जैसा दिख रहा है और गेट बने हुए हैं बहुत बड़े बड़े।

एक कमरा दिख रहा है जहां पे बहोत सारे सामान रखे हुए हैं।

एक शॉप दिख रही है जहां पे एक--

और अब बाइक्स भी खड़ी हैं बहुत सारी--

जोकि उससे लेने आया है और किनारे किनारे समान भी रखे गए हैं।

जैसे सेव रखा हुआ है संतरा रखा हुआ है टोकरी में कैरेट में रखा हुआ एक आदमी है जो गमछा ओढ़ा हुआ है।

रोड पे और जो दुकान में हैं बहोत सारे सामनें अं रखे हुए हैं और दुकान का नाम लिखा --

और कारपेट बिछाया गया है रेड कलर की उस पंडाल के अन्दर जाने के लिए --